यह एक पार्क दिखाई दे रहा है | पार्क के आस-पास बोहोत सारे पेड़ लगे पेड़ लगे हुए हैं | पार्क मे सीमेंट की गुम्बी लगी हुई --

किसी पार्टी समारोह का खाना चल रहा है खाना व्यक्ति खा रहे हैं। एक व्यक्ति हाथ में थाली लिए हुए है सामने खाना ले रहा है।